यह एक बाग का दृश्य है जिसके चारो तरफ लोहे की जंजीर बनी हुई है। सामने कुछ रंग-बिरंगे बैठन के जगह बनाए --

इसके आगे कुछ पानी भी रखा हुआ है। कुछ लोग खड़े हैं और कुछ बच्चे खड़े हैं। ऊपर उजले कलर का बादल दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ा सा खंभा दिखाई दे रहा है जो कि ब्लू कलर का है चिमनी बोलते है और पीछे एक छोटा सा नदी दिखाई दे रहा है और एक बड़ा सा रास्ता भी दिखाई दे र --

यह एक बड़ा सा अपार्टमेंट दिखाई दे रहा है जिसकी खिड़कियां कांच के बने हुए हैं। नीचे बोहोत सारे गाड़ी रखे हुए टू व्हीलर और फ़ोर व्हीलर । यह उजले कलर का फ़ो --

सामने एक ट्रेक्टर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर एक कुत्ता बैठा हुआ है। पीछे एक लोहे का बड़ा सा रोड रखा हुआ है और एक बड़ा सा घर बना हुआ है।

ऊपर एक आसमान दिखाई दे रहा है बगल में एक रोड दिखाई दे रहे है | रोड के किनारे पे कुछ पानी भी दिखाई दे रही है।

इस पत्थर का रंग लाल दिखाई दे रहा है और ये बड़ा सा पत्थर है जो कि काला दिखाई दे रहा। आसपास सूखी झाड़ियां भी दिखाई दे रही है।